कांच लगी हुई है आसमान सफ़ेद दिख रहा है साफ़ है नीचे कहीं कहीं पे दीवाल पे काला काला है गोबर टाइप में लगा है पेड़ पोधे दिख रहे हैं हरे हैं भूरी मिट्टी दिख रही है।